नीचे की ओर बहोत जादा बलून से सजावट की गई है।

इसके पीछे रॉयल एनफील्ड रखा लिखा हुआ है।

जिसके पूरे दरवाजे एवं खिड़कियां शीशों के बने हैं।

इसमें बहुत सारे कार लगाए गए हैं।

एक आदमी ने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

इस तस्वीर पे एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है यह सफेद रंग का है।

इ इसमें से ग्राउंड में बहोत सारे बॉल रखे गए हैं जो सफेद रंग के हैं।